रस्सी बाँधी हुई है जो सफेद कलर की और लाल कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। ब्रिज के चारों तरफ --

और बहोत पब्लिक दिखाई दे रही है और महिलायें और बहोत सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं जोकि लाइन लगाए हुए --

इस तस्वीर मे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमे एक स्कूल दिखाई दे रहा है। सामने बहुत सारे बसेस खड़ी हैं। उनका कलर उम पीला है। लड़किया बैठी हुई हैं।

इस तस्वीर में हम देख पा रहा हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज खंबो के सहारे खड़ा है।

रॉस सी बनी हुई है और कुछ कुछ प्लास्टर से बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं। चारों तरफ बाउंड्री हो रही है। बाउंड्री के बीच में एक खेत है। कुछ सब्जियाँ हैं और कहीं घास --

इस में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में मोबाइल है जिसने नीले कलर की शर्ट पहनी है। पीछे एक और लड़का अ दिखाई दे रहा है।

अ व्यक्ति आ रहे हैं और जा रहे हैं कुछ झन --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

घास फूस और मिट्टी कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे --

अ नीचे फर्श है जोकि कथई और सफ़ेद है।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

इस तस्वीर में हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल के सामने अं जंगल में बहोत बड़े-बड़े सूखे पेड़ लगे हुए हैं। कहीं हरियाली है। कहीं हरे-भरे पेड़ लगे हैं। नीचे मिट्टी कंकड --

में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बहोत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है बलुन से। बलून का कलर सफ़ेद और लाल है।

और नदी के किनारे सभी औरतें खड़ी होके एक-दूसरे के --

इस तस्वीर में हमें एक सब्जी मंडी दिखाई दे रही है। नीचे ऊबड़-खाबड़ अअ रास्ता है। सब्जी की दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सफ़ेद कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

इस तस्वीर में हमें बड़ा समंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर नीला-नीला आसमान। समंदर में एक नाव दिखाई दे रही है जोकि नीले और काले कलर की है।

इस तस्वीर में हमें दिख हमें दिख रहा है। यह एक जिम है। जिसमें व्यक्ति काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा है और एक व्यक्ति --